बहुत सारे महिलाए खड़े हैं और छत पर एक लाइट नजर आ रहे हैं और बहुत ही अनेक प्रकार का डिज़ाइनिंग किया गया है।

बहोत बड़े-बड़े बिल्डिंग नजर आ रहे हैं जोकि एक होटल है एस जे पी होटल और एक गुप्ता ट्रेडर्स है। बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। एक भयानक प पहाड़ दिख रहा है।

एक बहुत बढियां छोटी टाइप का नदी है उसमे नाव हैं आगे में कुछ मंदिले हैं बहुत सारे पेड़ पौधे है।